दो आदमी करेट को उठा रहे है।

दो तीन सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं गेट के।

इस टीन के नीचे एक आदमी और एक औरत बात कर रही है।

इस फोटो में एक परचून की दुकान है।

और इस मिल में बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली बनने की भर कर जा रही है।

और कुछ छोटे और बड़े पत्थर भी पड़े हैं।

और इस रेस्टोरेंट मे बहुत सारी कुर्सी और टेबल रखी है।

इस फोटो में रेलवे स्टेशन है।

पीछे भी बहुत सारा सामान रखा है।